जिसमें रंग-बिरंगी बहुत सारे फुल हैं।

ऊपर भी इमारत की ढांचा बनाया गया है।

यह बिहार की फेमस लीची है।

उसके अगल-बगल से वायर जा रही है।

और दूल्हा शे शेरवानी में है।

बहुत सारी इ इ बेंचेस पड़ी हुई है।

माता के हाथ में वीणा दिखाई दे रही है।

इसके अन्दर देवी माँ की परतीमा है।

जिसके अंदर डॉक्टर ने के कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहे है।

और नेक अ फेन है जो लटका हुआ है वाल से |

एक महिला एक बच्ची को पुरस्कार दे रही है।

कुछ आदमी अ काम कर रहे हैं और कुछ आदमी करवा रहे हैं एक आदमी जो नीले कलर का टी-शर्ट है।

यह एक शादी समारोह का दृश्य है।

जिसके बाहर में एक मोटर साइकिल दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में डांस करने वाले एक ग्रुप को दिखाया गया है।

कुछ लोहे के ग्रिल पड़े हुए हैं।

बहुत सारी छोटी-छोटी प्लांट है।

यह एक बेकरी शॉप है जहाँ पे --